जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको एक उम मल्टी दिख रही है मल्टी हमको बहुत सुंदर दिख रही है मल्टी बहुत ही प्यारी लग रही बहुत ही सुंदर लग रही है सामने से रास्ता जाते हुए दिख रहा है जो मल्टी की और जाते हुए दिख रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको का ऑफिस दिख रहे हैं सरकारी दफ्तर का ऑफिस दिख रहा है नीला कलर का बोर्ड लगा है जो की बहुत ही गंदा दिख रहा है बहुत ही घटिया दीख रहा है।

गेट दिख रहा है जो की जाली का दिख रहा है जो खुला हुआ है सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है पीछे पेड़ दिख रहे है जो की बहुत ही सुंदर बहुत ही हरे- भरे दिख रहे है बहुत ही अच्छे दिख रहे है बहुत ही सुंदर दिख रहे है नीले और वाइट शेड में--

और खाने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत ही प्यारी लागे-- टमाटर सॉस की बॉटल लग रही हरी चटनी की बॉटल लग रही है टेस्ला रखा हुआ है जिसमें नमक मिर्ची रखा हुआ दिख रहा है हरा धनिया रखा हुआ दिख रहा है चम्मच दिख रहे दही बड़े दिख रहे हैं हरा कारपेट दिख रहा है।

पोक नाम से दुकान दिख रही है। फास्ट फूड की दुकान दिख रही है अंडे की ट्रे दिख रही है उसके ऊपर नूडल्स मंचूरियन दिख रहा है बना हुआ पीछे हमको दुकान दिख रही है।